सामने एक गेट है जो कि एक बिल्डिंग का गेट है। वह गेट भूरे कलर का है। उसमें नुकीले नुकीले लोहे लगे हैं ऊपर ओर। अगल बगल दीवाल है। दीवाल में सफ़ेद कलर का पेंट हुआ है।

उसमे सफ़ेद कलर का पेंट हुआ है और हरे कलर से लिखा हुआ है और बालकनी बनी है ।बालकनी में बोहोत सारी खिड़कियाँ हैं सामने मकान है जिनमें ऐ_सी और कांच लगी हुई है|

उसने काले कलर का हेलमेट पहना हुआ है। सल्ट पहना हुआ है और नीचे पैन्ट पहना हुआ है और बगल में एक बहुत बड़ा पैलेस खुला हुआ है जो कि गोविन्द पैलेस हैं। उसमें कत्थई कलर का ए कत्थे कलर का पैन्ट हुआ है और सामने एक तिरंगा लगा हुआ है।

आमने एक बिल्डिंग दिख रहा है जोकि दो मंजिला है उसमे सामने एक गेट लगा हुआ है जोकि काले कलर का है।

और सामने एक घर दिख रहा है जो की बहुत छोटा है। उमसे ऊपर की छत टीने की बनी हुइ है जो की पार्क के लिए बनाया गया है।

सामने एक दुकान है जोकि कपड़े की दुकान है| उसमे बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं| सामने कुछ चेयर रखी हुयी है जोकि ग्रे कलर की है और समाने काउन्टर बने हुए है जोकि सफ़ेद कलर के है| पीछे एक पंखा लगा है जोकि सफेद कलर का है।